और चक्का भी निकल के है और गाड़ी का आगे वाला भी निकल के है।

मछली दिखाई दे रहा है और दो औरत जो एलो साड़ी पहन के है।

जो खाना थोड़ा थोड़ा बच के है और--

चार्जिंग पॉइंट में कुछ वायर लगाके हैं।

साइड साइड में दो दरवाजा रखा हुआ है।

और साइड साइड में सामान ये सब है।

एक घर है वो बेंबू से बना के है फिर उसका आगे वाला जो आर_सी_सी है।

यहां सेब बनाने वाला घर है ये जो।

लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी और फिर उसके पीछे में है पेड़।

ये जो एक घर दिखाई दे रहा है ऊपर में लिखा हुआ है सर्विस और फिर अलग साइड में है रेनॉल्ट ।

ये जो एक सारी फंक्शन का है जैसा लग रहा है।

और पीछे में एक गुफा दिखाई दे रहा है और साइड में तीन पत्थर --

और सबसे आगे में गेट हैं जो खुला है।

पूरा कपड़ा जो कुर्ती पहन के है।

उसका आगे में एक और ऊपर में एक--

और फिर गेट है एक जो बंद और एक जो खुला --

घर हॉफ भी दिखाई दे रहा है यहां पे।

वहां में लॉलीपॉप है शैंपू है।

ये जो एक क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है।